ये एक मैकेनिक की दुकान है यहां पर एक वैन --

ये बहुरानी सारी का शोरूम है इसके बाजू में है।

फ्रिज रखा हुआ है तीन चेयर हैं एक टेबल है यहां पर बोर्ड में कॉफी मिलती है चाइनीज़ मिलता है।

सामने दो जेंट्स खड़े हुए हैं उसके सामने कांच पर दो कार दिख रही है फोर व्हीलर है।

मार्ट यहां पे ई रिक्शा खड़ी हुई है यहां एक जेंट्स हैं पीछे भी एक जेंट्स हैं साइड में एक पेड़ लगा है और वहां पर गाय खड़ी हुई है।

और लगभग चार-पांच खिड़कियां हैं एक शटर है।

फूल लग रहे हैं नीली कलर के दरवाजे--

नाव में एक आदमी खड़ा हुआ है जो जींस और लाल कलर की टी_शर्ट पहने हुए हैं।

घास भी उग रही है और नीचे पानी है।

यह एक होटल है होटल का नाम है आनंद पैलेस एंड रेस्टोरेंट ।

और पास में एक शॉप है और बाजू में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है।

लास्ट झूले के पास पेड़ लगा हुआ है।

ए_टी_एम मशीन शायद अंदर रखी हुई है।

मैदान मे तीन चार गाड़िया खड़ी हुई है।

और यहां नीचे जेंट्स आदमी खड़े हुए हैं जो वाइट कलर की शर्ट दो आदमी वाइट कलर की शर्ट --

इसमें ब्लफ लगे हुए हैं एक झूमर लगा हुआ है एक एल_सी_डी लगी हुई है ब्रेंच और टेबल बहुत सारी वाइट कलर की रखी है।

कॉस के नीचे यह लोग खड़े हुए हैं चादरों के शेट के सामने बहुत सारे लोग--

और बाहर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं और थोड़े बहुत लोग--